पत्थर का दरवाजा बना है मेहराब है गोल-गोल मेहराबे बनी है नीचे बहुत सारे पीलर है और वहाँ पर एक मतलब गुफा टाइप के बनी हुई है और वहाँ पर कुछ लोग खड़े हुए जो की फोटो ले रहे हैं।

कुछ शेड बना हुआ है ब्लू कलर के प्लास्टिक का और उसके बाजु में पेड़ दिख रहा है बहुत बड़ा सा। ग्राउंड है ग्राउंड के बाहर भी पेड़ लगे हुए हैं।

एक लड़की है जिसके पास तीन से चार शीट है पिंक है ग्रीन है डार्क पिंक है वाइट कलर है कुछ कलरफुल मतलब कलर रखे हुए है पेंसिल और रबड़ है।